यहाँ पे बहोत ही अच्छी व्यवस्था की गयी है बच्चों के पढ़ने के लिए ऐसी भी है पंखे भी है व्हाइट बोर्ड और प्रोजेक्टर के द्वारा शिक्षा दी जा रही है ।

ये एटा उतर प्रदेश का सिटी हॉस्पिटल है। ये सर्व सुविधा युक्त सम्पूर्ण सुविधा युक्त हॉस्पिटल है। यहाँं --

दृश्य में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है बहुत ही गंदगी दिख रही है यहाँ पे इतनी सी भी साफ-सफाई नहीं है।

ये बहोत ही सोहावता दृश्य है। ये एक खेत का दृश्य है जहाँ पे बहोत ही अच्छी फसल उगी हुई है।

पेट्रोल पंप का दृश्य है। जहाँ पे लोग अपने गाड़ियो मे पेट्रोल और डीजल भरा रहे --

शांति रसिक लाल एम धारीवाल जैन भवन है जो की हैदराबाद में स्थित है और ये काफी बड़ा भवन है।